और कमरों के बाहर बहोत सारी लाइटे लगाई गई है।

चम्मच के स्लेट रखे हुए है और एक बोतल भी हा--

टावर भी लगा हुआ है और बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

जोकि गोल धारे में पार्क है और इसके बीचो बीच घास और--

और वहां पर एक सूरज भी दिखाई दे रहा है।

जिस गुरुद्वारा में लोग खड़े हुए है।

मुझे यहां पर एक बहोत बड़ा दफ्तर दिखाई दे रहा है।

इस दफ्तर के बिचो बीच रास्ता है और इसके बाहर--

इस ऑफिस में दो लड़के खड़े हुए हैं और एक लड़की नीचे बैठी हुई है।

बड़ी सी टोकरी में आलू दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बाहर एम्बुलेंस और बहोत सारी गाड़िया खड़ी हुई है।